इस तस्वीर मे यह दिखाई दे रहा है यह एक रेलवे स्टेशन की बाहर की तस्वीर है जहां --

जहाँ बीचों-बिच एक बड़ा सा मैदान भी है।